अ व्हाइट कलर कर्टन्स लगे हुए है यहाँ पर एक झूमर भी है।

ये एक शादी का हॉल है जिसके सामने--